सेकंड फ्लोर पर मुझे एक आदमी दिख रहा है और मुझे--

और पीछे के तरफ भी मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

एक बड़ासा काउंटर दिख रहा है उसके ऊपर बहोत सारे--